और एक अमूल डेयरी जहां से डेयरी है जहां से दूध दही ये सब लिया जाता है उसको दिखाया गया है।

इस महल का निर्माण का बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ कर किया गया है।

इस फोटो में एक डेरी को डेरी जहां से दूध वड़ा पाव यह सब भी लाया जाता है उसका चित्रांकन किया गया है| उसको दिखाया गया है| अनुष्का डेरी इस डेरी का नाम रखा गया है।

ए जिनका बयान करना बहुत ही अ अवर्णनीय है।

इस फ़ोटो में गिफ्ट स्टोर है।

और एक छोटा सा घर ऐसे लग रहा जैसे कोई फार्म हाउस है जहां पर खेती की तैयारी की जाती है।

अ जिंस जिन जिनके पत्तों को खाकर अ जानवर अपना पेट भरते हैं।

के आस-पास एक दूर दुर्ग का मतलब एक किले का निर्माण किया गया हो |

नीचे छोटे मोटे हल्की पहाड़िया और आस पास हरियाली खुला मैदान --

इस तरह से बोहोत ही अच्छे से झूले लगाए जाते हैं और मेले में सब लोग इकट्ठे होकर बोहोत ही आनंद लेते हैं।

हरियाली ही हरियाली और लोग घूमने जाने के लिए ऐसी जगह को ही पसंद करते हैं।

इस तस्वीर में कलेक्ट्रेट अधिवक्ता भवन दिखाया गया है जहां पर अधिकारी बैठ कर अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं।

तो इस बात का खास कर ध्यान रखा जाता था कि जब दुश्मन हमला कर तो आसानी से वह जीत ना पाए।

जहां पर जो सामान है वो रखा गया है और लोग आकर यहां से अपनी जरूरत का सामान ले जाते हैं ।